विद्यालय को सफेद रंग से पेंट किया गया है तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए ग्रिल भी लगाया गया है।

एक लड़का है जो कि काला कलर का शर्ट पहना है।

इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा है और एक आदमी अंदर की ओर जा इसके रहा हैं।

उसमें हरा भरा पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।

दो डी_जे के साइड में कुछ आदमी खड़ा हैं।

फ्लोर डीजे के साइड में दो तीन प्लास्टिक के थैले नीचे रखे हुए हैं।

दो लडका बैठा हुआ है और एक लडका खडा है।

यहां पर चार पांच कॉपी और एक किताब रखा हुआ है जो की जमीन पर फर्श पर रखा हुआ है।

इस किताब में बहुत सारा चित्र बना हुआ है।

यह एक बाल काटने का दुकान है।

इस भवन के ऊपर दो पोस्टर चिपका हुआ है जो ब्लू और पीला रंग का है दोनों में लिखा हुआ है फूड बॉक्स ।

यहां की दीवार पर एक पोस्टर चिपका हुआ है। यहां पर बहुत व्यक्ति हैं। यहां की दीवार पर चक्र बना हुआ है।

यह एक मंडी है जिसमें की लाल लाल सुंदर सुंदर टमाटर रखा हुआ है हरी हरी मिर्च रखी हुई है।